बगल में डैम है जिसमें जिसमें ब्लैक कलर का पानी है और जो पुल है उसके लाल रंग का रेलिंग है और आदमी सूट-बूट पहने हुए और ब्लैक दाढ़ी भी है।

अ सामने एक आदमी ब्लैक स्वेटर पहन के खड़ा है और नीचे ब्लू पेंट है और आगे एक दुकान के आगे एक पोल लोहा का खंबा है।

रेड येलो ग्रीन ब्लू कलर का झंडे है और अच्छी सी एक सड़क है जिसके साइड में ग्रीन कलर का एक छोटा गार्डन बना हुआ है और सड़क के बगल में पीला --